यहाँ पे देख सकते हैं ये घर वर हैं और ये घर सब में भी देख सकते हैं आदमी सब आये हुये हैं और इधर देख सकते हैं आप लोग ये और ईधर आदमी एक और खड़ा हैं।

और यहाँ देख सकते हैं आप लोग इन्जेक्शन विनजेक्शन का डब्बा भी रखा हुआ हैं और ये सब लाल कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो कि लाल कलर बहुत ही अच्छा--

देख सकते हैं ये लोग फोटोशूट पे आये हैं जो कि जो- दो लड़का है और ग्रीन कलर का ये कारपेट बिछा हुआ हैं और उधर सजावट देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा किया गया--

आप लोग सकते हैं ये कार गैरेज हैं यहाँ पर ये कार बनाने के लिए आये हुए हैं और ये फोर व्हीलर सब हैं जो कि व्हाइट व्हाइट कलर के दो ठो लगे हुए और इधर बहुत सारे आदमी आये हुए हैं।

और पीछे में देख सकते हो वो हरा बरा कुछ खेत उत टाइप का लग रहा हैं और उधर पीछे भी बिल्डिंग विलडिंग हैं और इधर एक घर पे ट्रालि विली दिया गया हैं जिसका कलर ये पीला हैं।